यह मशीन ब्लैक कलर की है जो की पेपर को प्रिंट करती है।

टेबल कुर्सी भी रखी हुई है और सामने की और एक गाड़ी भी रखी है।

यह एक कपड़ों की दुकान है जहां आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

प्लास्टिक का सामान भी रखा हुआ है और सोआकी भी रखी हुई हैं।

अंदर की और दो गाड़ियां भी रखी हुई हैं जो कि झा इंजीनियरिंग वर्कशॉप के नाम से जाना जाती--

यह एक पहाड़ नजर आ रहा है जहां पर सामने की ओर एक चीड़ का पेड़--

और बहुत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं जोकि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।

प्लास्टिक की बॉटल में दवाइयां रखी हुई है और एक पर्दा भी लगा हुआ है।

यहां हम देख सकते हैं नीचे की ओर दो गाड़ियां खड़ी है।

यहां आप देख सकते हैं ये पाइप का गोदाम सा नजर आ रहा है।

और एक बाजू में बैरिकेट भी लगा हुआ है और समाने की ओर ऑटो भी खड़ा हुआ है।

एक डिजाइन में साइड तक टाइल्स लगे हुए हैं जो कि कुछ पक्षियों के पंख जैसे नजर आ रहे हैं देखने में ऐसा लग रहा है।

और एक गाड़ी भी रखी हुई है और कुछ कस्टमर भी खड़े हुए --

पिलर काम कर रहे हैं तीनों लोग मिलकर उस पिलर को भरने की कोशिश कर रहे हैं।

यहां आप देख सकते हैं पांच लोग यज्ञशाला के नीचे बैठे हुए हैं जो की हवन कर रहे हैं।

उसके बाजू में एक जनरेटर भी रखा हुआ है और कुछ प्लास्टिक के डब्बे भी रखे हुए हैं जो कि खाली है।

देख सकते हैं कि एक रस्सी पर बहुत सारे कपड़े भी नजर आ रहे हैं और सामने की ओर एक बिल्डिंग भी है।

यहां आप देख सकते हैं एक थ्रेसर रखा हुआ है जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है।

सफेद और नीले कलर की एक पट्टी लगी हुई है और बांसों से बनी है ये झोपड़ी।